दिखाई दे रही है इसके ऊपर एक--

सफेद रंग की बाउंड्री हो रखी है और बहुत--

यह तस्वीर एक पारक की नजर आ रही है जहां बहोत से--

कुछ डब्बों में हैडफोंस इयरफोंस भी रखें--

बहोत सारे आदमी बैठे हुए हैं यहां--

शॉप के आगे तीन बोतल रखी हुई हैं तथा ग्लास को रखने के लिए ग्ला--

यह तस्वीर बुद्धा की नजर आ रही है बुद्धा जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुद्धा की --

यह तस्वीर एक रोड के पास की दिखाई गई है जहां--

डी_जे फ्लोर है और यह एक कमरे में--

इन ट्रैक्टरों को बाहर दिखावटी के लिए खड़ा किया गया है।

जहां बहुत से पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

येह तस्वीर शायद किसी तीरथ स्थल की नजर आ रही है यह हाथी के ऊपर लाल रंग का--

यह दुकान रोड के ऊपर बनाई गईं है।

इन दुकानों का फ्रंट गेट --

और इस झू में बहुत सारे हरे भरे लंबे लंबे पेड नजर आ रहे हैं।

यह तस्वीर किसी दुकान की व कैंटीन की नजर आ रही है।

रिसेप्शन के नजर आ रही है जहां लाल रंग की छत नजर आ रही है।